यहां पे टीचर और बाहर मे कोय कुछ या प्रोग्राम वगैरा कुछ होगा बाहर दो पुलिस वाले खड़े है वहां पे मेम है।

पूजा हाथ जोड़ के भगवान से हे लोग प्रणाम करो और बच्चे माँ का फेस देख रहे है और यहाँ पे भगवान पूजा अर्चना निष्ठा के साथ पूजा हो रहा है ।

और जो आप देख रहे है इसमें आसमानी कलर का जो पर्दा है बहोत ही खुबसूरत दिखाई दे रहा है ।